मुझे यहां एक ऑफिस के कैफे लग रहा है जिमें बहोत सारी पेंटिंग में लगी हुई है और सामने चेयर पे--

ऐ टॉयलेट भी बेचे जा रहे हैं और अच्छे व्हाइट कलर के सारे है और वाइट कलर के--